यहाँ पर बिल्डिंग बनी हैं यहाँ पर बहोत बड़ी बहोत बड़ी यहाँ पर अच्छी बिल्डिंग बनी हैं यहाँ पर दो तीन लोग भी खड़े हैं यहाँ पर मुझे ऐसा लग--

ऊपर से अच्छी दिखाई दे है ऊपर से अच्छी लोहे कि वो बनी है और छाया भी बनी है यहाँ पर अच्छी ट्रेन के लिए ट्रेन डली यहाँ पे खंभे भी दिखाई दे रहा है और बहोत बादल भी दिखाई दे --